जो रोड है वो ब्लैक कलर की है उसके ऊपर व्हाइट कलर की पट्टी है।

उं पांच आदमी है दिख रहे है और एक ने येलो कलर की टी-शर्ट पहन रखी है एक ने ग्रीन कलर की और इसमें जो चेयर्स है वो --

और कुछ पेड़ पौधे है एक शीशा लगा हुआ है।

जिसके ऊपर पांच छतरियां लगी हुई है।

यह किसी कॉलेज का फोटो है।

इस फोटो में कुछ शीशे दिख रहे--

इसमें कुछ ग्रीन पौधे लगे हुए हैं।